और यहां पे माला बिल दिख रही है माला लगी हुई है एक साइकिल खड़ी है यहां पे देख सकते हो आप साइकिल दिख रही है यहां पे।

ये पानी की छोटी छोटी पानी सीसी है।

घड़ा भी दिख रहा है यहां पे एक लड़की बैठी हुई है।

ये यहां पे एक मैदान है ये मैदान खेलने का है।

पिय फ्रूट लिखा हुआ है नीचे पानी का टम्पर लिख दिख रखा है यहा पे एक--

ये यहां पे आदमी खड़े हुए हैं।

सफेद कलर की ये टी-शर्ट पहन रहे एक आदमी ने भी यहां पर चार आदमी खड़े हुए दिख रहे है हमे पीछे मकान है।

ये यहां पे दो आदमी खड़े हुए हैं।

आदि लिखा हुआ है आप देख सकते हो यहां पे बहुत अच्छा दिख रहा है ये।

आप देख सकते हो होटल सा लग रहा है।

कपड़ों की दुकान है यहां पे कच्छे भी दीख रहे हैं आपको पहने के लिए अंडरवियर जिसको--

ये यहां पे आदमी खड़े लड़के बच्चे खड़े हुए हैं।

ये स्कूल है यहाँ प्रेर की--

कि कितना अच्छा सुहाना सुहाना मौसम--

ये पर एच डी की शोरूम है। आप देख सकते हो क्या हुआ--

ये एक घर है यहां पे बोहोत सारी ईंटें लगी हुईं हैं घर खंडरसा है और घर के पास में एक खिड़की ओर --

यहां पर टी शर्ट और पैंट मिलती है।

सफेद रंग की गाड़ी के पास दो आदमी खड़े हैं रेड कलर की गाड़ी के पास कोई नहीं खड़ा--

यहां पे ये आदमी खड़े हुए हैं आप देख सकते हो यहां पे ये क्या कर रहे हैं ये--